और कुछ प्लक के पार्ट ये लगाई हुई है जिसमें पिने लगाई हुई है ए_सी कूलर सब पड़े हैं बड़ी शॉप है।

स्कूटीया भी पीछे खड़ी है पीछे गाड़ीया भी खड़ी है साइकिल भी खड़ी हुई है खंबा भी लगा हुआ है।

लड़कियों ने अलग अलग अ ड्रे कलर के ड्रेस पहन रखी है।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है बड़ा सा घर है जिसमें बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए हैं।

पुस्तकें लेने वाला है उसके पास एक बॉक्स पड़ा है उसमें पुस्तके भी रखी हुई है शायद वो पुस्तके रख रहा है या शायद वो पुस्तकें --

शादी का मंडप हॉल सा लग रहा है जैसे उसके पीछे उसके आगे दो गार्ड भी बैठे हुए है एक गार्ड लग रहा है।

बहोत सारी लाइटें जग रही है बहोत सारे फूल भी लगे हुए है सफेद कलर के परदे लगे हुए हैं बहोत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है रात का माहौल है।

एक बड़ीसी बिल्डिंग नजर आ रही है उसके आगे ये बोहोत सारी बाइके खड़ी हुई है सेंटर भी नजर आ रहा है दुकाने भी नजर आ रही है।

यहां पे कुछ लड़के लड़कियां कसरत कर रहे हैं ऊपर एक पंखा लगा हुआ है एक बड़ा सा नजर आ रहा है।

कमरा बनाया हुआ है जिसका दरवाजा दिखाई दे रहा है सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक सेंटर लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है पास --